इस इमेज मे स्कूल की चार स्टूडेंट लड़किया दिखाई दे रही है जो कुछ बनाई हुई है और एक मगा दिखाई दे रहा है। एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

और एक इंसान भी दिख रहा है उसके हाथ मे एक फोन दिख रहा है यहा पे ग्राउंड मे छोटे-छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

एक वर्कर उसे पानी से साफ कर रहा हैं पानी की पाइप दिख रही हैं और काफी ह दो रोशनदान दिख रहे हैं बिल्डिंग छत दिख रहा हैं।